पीछे में एक बोट भी दिख रहा है।

सामने एक कपड़े का दुकान दिख रहा है |

सामने श्री रामजी का मंदिर दिख रहा है |

नीचे में पत्थर भी बिठाये गए हैं |

एक बड़ी सी मूर्ति भी दिख रही है |